एक पीछे गाड़ी रखी हुई है और पल्लर है साइड से और दीवार है जोकि स्लेटी कलर की दीवार है जमीन है बहुत बड़ी।

मदिर है मारवेल का जिसके आगे साई बाबा की मूर्तिया राखी है बगल से एक माता रानी मूर्ति राखी है जो फूलों से डेकोरेट हो रखी है जिसमें माला छड़ी हुई है एक पंडित है।

जो कुछ मल्टी कलर का पर्दा है नीचे जमीन है व्हाइट कलर की जमीन है जिस पे पीछे कुछ फेला हुआ उगला साइड से कुछ टेबल रखी हुई है बगत से कुछ टेबल राखी हुई है।

फारा ब्लॅक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है पीछे एक शटर है जोकि स्लेटी कलर की शटर है पीछे से कुछ दिख रहा--